में पंखा भी लगा हुआ हैं वाइट कलर का रूम पेंट हैं बहुत ही अच्छा हैं।

और आप भी आइये घूमिए बैठिये और बहुत ही बहुत अच्छा है ये गया में हैं। आप भी --

बहुत ही सुन्दर हैं हरा बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा हैं बहुत ही बादल छाए हुए हैं बहुत सारा पेड़ पत्ते हैं।

पुराना हो गया हैं इसको पेंट करना बहुत जरुरी हैं दोगो मंदिर हैं बगल में पेड़ पौधा है इसका बहुत ही कलर छूट रहा है कलर किया हुआ था जो मिटक रहा।

रेलवे स्टेशन हैं --

हम्म ये कोई फंक्शन का है जहाँ पे पीछे लड़का हैं जो पहने हुए उसके सामने एक अंकल हैं जो ब्लैक कलर का कुर्ता पहने हुए हैं | लड़के भी है दूल्हा भी है दुल्हन भी है जो रिंग सेरेमनी हो रही है ।